यहाँ पे जलती हुई लाइट्‍स दिखाई दे रही है और एक --

यहाँ पर हमें एक चर्च टाइप्स का दिखाई दे रहा है जहाँ पर काफी सारे लोग हमें दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर काफी सारे कापड़े अ मं कपड़े हैं जो हैंगर्स में लगे हुए लटक रहै हैं और यहाँ पर हमें कुछ लगे हुए कपड़े के पोस्टर्स दिखाई दे रहै हैं।

मे काफी सारे बलून्स लगे हुए हैं और नीचे कुछ हैड्स दिखाई दे रहै हैं।

कई सारे लगे हुए बोर्ड्स दिखाई बैनर्स दिखाई दे रहे है बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे हमें झूलते लटकते हुए कुछ बैग दिखाई दे रहै है और शॉप के अंदर काफी सारे पेन पेंसिल्स दिखाई दे रही हैं।

चलते हुए कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहै हैं यहाँ पर एक लोगों भी लगा हुआ है और ऊपर रैलिंग्स लगी हुई है यहाँ पर हमे पेड़--

यहाँ पर हमें ए एक एट अ ए. टी. एम. दिखाई दे रहा है ए.टी.एम. से बाहर निकलते हुआ हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

अंदर ए. टी. एम दिखाई दे रहा है और ए. टी. एम के पास खड़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और एक लाइट जल रही है अंदर --

यहाँ पर हमें कुछ पॉलिश वगैरा और कुछ --

यहाँ पर हमें एक अ पैलेस टाइपस का दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक भगवान भगवान बुद्ध की --

यहाँ पर हमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगो पगड़ी बांध रखी है।

यहाँ पर हमें काफी सारे औरतें कुछ बच्चे और कुछ वृध्द पुरुष दिखाई दे रहै हैं।

दो लोग दिखाई दे रहे है पर एक व्यक्ति है जो कुछ अ--

फोर व्हीलर खड़ी हुई दिखाई दे रही है और हमें कुछ नांव दिखाई दे रहै हैं एक तरफ नांव में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहै हैं।

यहाँ किनारे पर है हमें कुछ कागज के रैपर्स --

यहाँ पर हमें कई सारे पेड़ दिखाई दे रहै हैं और कुछ झाड़ियाँ दिखाई दे रही है।

यहाँ पर टेबलेट्स के प्लास्टिक की टेबल्स पर कुछ पर कुछ पैर पहुंचने के मैटस कई तरह के अलग-अलग डिजाइंस के अलग-अलग कलर के--

एक हार्ड डिस्क रखी हुई हैं यहाँ पर काफी सारी--

यहाँ दीवार पर अ हमें कुछ मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास में एक और शॉप दिखाई दे रही है यह शॉप में नीचे कुछ स्कैनर लगा हुआ है।

यहाँ पर हमें एक मल्टी का ग्राउंड फ्लोर टाइप्स का दिखाई दे रहा है जहाँ की छत पर हमें कुछ--

यहाँ पर कुछ लोग है जो चेयर्स पर बैठे हुए दिखाई दे रहै हैं और एक एंकरिंग - एंकरिंग करती हुई दिख रही है।

यहाँ पर कांच की डोर लगी हुई है और जिसमे की सामने वाली घर की परछाई जाती हुई दिख रही है।